यह फोटो में आप देख सकते है यह फोटो है एक पटना शहर के जिला डिस्ट्रिक हॉस्पिटल का फोटो है जीसका नाम राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान चल रहा है।

यहाँं पर पटना भी लिखा है। हेल्थ वेलफेयर फैमिली पटना जिसमें काफी सारे लोग अपने इलाज करने आते हैं। जोकि देख सकते है आप --

जोकि आप देख सकते हैं और चर्च काफी अच्छा सजा हुआ भी है और ये रेड कारपेट पड़ी हुई है जमीन में।

और चर्च कु अ चर्च में फादर कुछ भाषण दे रहे हैं और इस चर्च में काफी अच्छी डेकोरेशन की गई है कोई फंक्शन है इस समय इनका --

ये फोटो में आप देख सकते हैं। यह फोटो में काफी सारी लेडिस लोग इसमें पूजा कर रहे हैं क्योकि काफी बड़ी पूजा लग रही है मेरे को लेकिन मुझे नहीं मालूम ये किस चीज की पूजा हो रही है।

इसमें आप फोटो में देख सकते हैं काफी लेडिस लोग और जेंट्स लोग भी दिख रहे हैं यहा पे और ये पूजा हो रही है और ये गांव में पूजा होती होगी पता नही मेरे को --

सामने एक लेडिज बेठी हुई है जिसके माथ नाक से माथे तक सिन्दूर लगा हुआ है। ये कोई पूजा है या शायद गोद भराई का टाइम है।

पुता हुआ है पेंट से पुता हुआ है आप और उसकी फर्श पे काफी अच्छी फर्श बिछी हुई है जोकि काफी साफ हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है और इस अस्पताल में बिल्कुल भी कोई मरीज नहीं है।